ये एक एक आदमी चश्मा पहने हुए है तो एक अह और रेड कलर --

और तीन कुरसियां दिख रही है और सामने एक शिवलिंग सा--

जो यहां खाली जगह पे भी कुर्सी दिख रही है।